तो ये बहुत अच्छे मछलियां दिख रही हैअभी पकड़ी हुई है।

जो कि पन्द्रह रूपये का हर आइटम मिल रहा है

जे- जेबी फटाइओ की दुकान है-ए जो कि आगे बहुत सारा सामान रखा हुआ है-ए इस -स्टूल रखे हैं जो की इकट्ठे हैं-ए काफी बड़ी दुकान है-ए अनुपेया शॉप --

हुम हर वेरिटी के पटाके मिल ते है।